इस तस्वीर में हमे काफी सारे फ्रूट्स दिख रहे है काफी सारे टब्स दिख रहे है फ्रूट्स में हमे अंगूर दिख रहे हैटू कलर्स के ग्रीन और ब्लैक अनार दिख रहे है संतरे दिख रहे है कैल केले दिख रहे है|

इस फोटो में हमें एक अ जंगल नजर आ रहा है। जिसमे हमें पाँच हिरण नजर आ रहे हैं और जो कि जिनके लिए घास रखी हुई है खाने के लिए।

पेड़-पौधे काफी सारे दिख रहें हैं और कुछ अ जालियाँ नजर आ रही हैं काफी सारी बैरिकेड्स दिख रहें हैं।

इस फोटो में हमें काफी मल्टीपल कलर्स के डोरमैट दिख रहें हैं।

इस फोटो मे हमे आ काफी सारे बेट और बोल नजर आ रहे है जोकी ब्लैक कलर की जाली मे फसे हुवे है उस के पीछे भी हमे कुछ चीजे दिख रही है

और जो बॉल्स हैवो वाईट येलो ब्लू कलर्स की हमे दिख रही है पिंक --

इस फोटो में हमें एक पिंजरा नजर आ रहा है जिसमे में हमें दो तोते दिख रहे हैं एक ब्लू कलर किया म तोते की जो शेड है वो ब्लू और येल्लो कलर का है।

इस फोटो मे हमको एक फ्लावर बगीचा टाइप का नजर आ रहा है जिसमे काफी सारे हमको फ्लावर्स नजर आ रहै है जोकी गें-गेंदे फूल है येलो कलर के फूल दिख रहै है।